एक कांच की टेबल रखी हुई है एक सिंगल बेड पलंग रखी हुई है ।

एक विंडो दिखाई दे रही है जिस पे कर्टेन्स लगे हुए हैं।

सीढ़ी पे चढ़ने के लिए रास्ता बना हुआ है।

एक छत के ऊपर लाइट लगी हुई है।

बहुत सी खिड़कियां बनी हुई है मस्जिद का कलर व्हाइट और ग्रीन है।

स्टेज बनी हुई है जहां पे हरे रंग की मैट बिछी हुई है।

इस बिल्डिंग में बहुत सारे बैनर लगे हुए हैं।

कुछ बिल्डिंग के बाहर बाउंड्री बनी हुई है और एक ब्लैक कलर की गेट लगी हुई है।

इस चित्र में एक ग्रोसरी मार्ट दिखाई दे रही है जहां पे बहुत सारी चीजे रखी हुई है।

यह दृश्य में एक मस्जिद दिखाई दे रही है।

एक टूल पर एक व्यक्ति खड़ा नज़र आ रहा है।

इस शोरूम के अंदर दो ऑटो लगे हुए हैं।

इस चित्र में एक तालाब की दृश्य दिखाई गई है।

इस तलाब के इर्द गिर्द बहुत सी सीढ़ियां बनी हुई है और रेलिंग लगाए हुए हैं ।

एक ट्रैक्टर के बॉडी के पार्ट देखी हुई है जिस पे डीलक्स लिखी हुई है।

बहुत सारे बालू दिख रहे हैं बहुत सारे लेब दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारे बोरे रखे हुए हैं कुछ पेड़ पौधे लगे हुए है मिट्टी भी दिख रही हैं।

मोस्टली ऑटो का कलर पीला और ग्रीन है।